दे रहा है | भालू काली कलर में दिखाई दे रहा है | बहुत बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है की कुछ लोहे के खम्बे गड़े हुए दि --

एक व्हील चेयर दिखाई दे रही है और कुछ एक महिला चलते हुए दिखाई दे रही है जिसके पास बैग सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है ।

कपड़ो के दुकान दिखाई दे रही कपड़ो मे अलग-अलग प्रकाश के कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे है साड़ियाँ टंगी दिखाई दे रही लहेंगे दिखाई दे रहे है बिल्डिंग पे बहु --

पर आसमान रंगीन दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिखाई दे --

फर्श पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं बच्चो के पास बूकें रखी हुई दिखाई दे रही है जो लड़का कुछ उनको समझाते हुए दिखाई दे रहा --

एक मकान दिखाई दे रहा है जिस पर गो गुड गेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ।

दो हॉल दिखाई दे रहा हैं हॉल में बहुत सारी बेंच और टेबल लगी हुई दिखाई --

एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक ब रेड कलर की बस दिखाई दे रही है जिसमे से --

नीचे गिरती हुई टूटती हुई दिखाई दे रही है जिनमें बहुत सारी पेड़-पौधे उगती हुई दिखाई दे रहे हैं कुछ बैले चलते हुए दिखाई दे रही है और --

एक काफी बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में कही-कही रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा है रास --

एक झंडा लगा हुआ दिखायी दे रहा है जहाज के में खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है जहाज --

एक बड़ा सा हॉल दिखाए दे रहा है हॉल में एक बहोत बड़ा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कुछ पेंटिंग है।

एक बहुत बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में शो पीस पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है कुछ बच्चो के --

एक बहोत बड़ा-बड़ा मेला लगा हुआ दखाई दे रहा है मेले में ब --

एक छत डलती हुई दिखाई दे रही है छत पर --

नीला सफ़ेद और काला दिखाई दे रहा है और हरी-भरी दूभा उगती हुई भी --